इस तस्वीर में ऊपर रखा हुआ एक लंबा सा बंबू भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे छे आदमी नजर आ रहा है इस तस्वीर में--

इस तस्वीर में मुझे एक डेंटल क्लिनिक भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारा घर दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे सीमेंट का छोटा छोटा टुकड़ा भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे घास सब भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में सफेद कलर की बेंच भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में प्लास्टिक का चेयर भी नज़र आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक आदमी ब्लू कपड़ा ब्लू पहना हुआ भी दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे एक इलेक्ट्रिक जग रखा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे तीन बड़ा बड़ा ऑरेंज कलर की पोल भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक आदमी बैठा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में बड़ा सा किचन दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक स्टूडेंट चार्ट पेपर पकड़ते हुए भी दिखाई दे रहा है।

नीचे में मुझे ट्यूब लाइट भी नज़र आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे चेयर भी दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में मुझे क्लॉक भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे सीरिया दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे सीढ़ी के कॉर्नर में लोहे से बनाया हुआ रैली भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे सामान रखा हुआ दिख दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे म्यूजियम दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे तीन पिंक कलर की बड़ी बड़ी पोस भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एच_डी_एफ_सी बैंक भी दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में मुझे फिल्टर रखा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे लंबा सा सफेद कलर का वॉल भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे लाइट बल्ब भी दिखाई दे रहा है।